और जगह जगह पे लाइट लगाए हुए हैं सामने एक ब्लैक कलर का एंगल खड़ा है।

आदमी खड़े हैं और जुम्मा कर रहे हैं मुस्लिम का मस्जिद है।

सामने बहुत ही बड़ा हॉल है। ऊपर में झालर सजाए हुए हैं।

यह एक बहुत बड़ा घर है ऊपर में कई सारे सजावट सजाए हुए हैं।

नीचे में बहुत ही सुंदर पानी बह रही--

यह एक कंप्यूटर रूम है ये पीला कलर का रूम है।

साइड में एक अलमारी है उसमें कई कागजात रखे हुए हैं एक बैग है।

इधर सामने एक झाड़ू रखा हुआ है। उधर कुर्सी के बगल में एक काउंटर है।

पिलर के नीचे वाइट कलर के पेंट किए हुए --

यह एक होटल है सामने एक चेयर दिख रहे है चेयर के पीछे एक चौकी लगा हुआ है।

यह जूस का दुकान है सामने दो लड़के खड़े हैं।

यह एक राशन का दुकान हैसामने एक टेबल दिख रहा है।

और नीचे में दो वो धम्मा दिखा रहा है।

यह एक स्विमिंग पूल है जिसमें दो लड़का और एक लड़की मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं।

स्विमिंग पूल के बीच में एक पीले कलर के छाता जैसे लगे हुए हैं।

एक बाराती शो है जिसमें सामने एक मैजिक लगा हुआ है।

यह एक कोचिंग सेंटर या स्कूल है जिसमें सामने एक लड़की का मुंह ढका हुआ है।

कुछ लेडिस बैठे हुए हैं एक आदमी उनका क्वांटिटी दिखा रहा है एक आदमी खड़े होकर देख रहे हैं।

उधर एक साइकिल वाले खड़े है साइकिल वालों के पास दो बच्चे खड़े हुए हैं।

उधर एक आदमी मसाला मिलाते हुए नजर आ रहे हैं।

यह एक पहाड़ी जगह है ऊपर से पानी बहता हुआ आ रहा है ।

सामने एक हरा कलर का कपड़ा दिख रहा है। एक लाल कलर का पीछे में दिख रहा है।